क्टर्टल के स्पेशियल कमांड्स के इस ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत हैं
इस ट्यूटोरियल में हम लर्न कमांड और रैंडम कमांड के बारे में सीखेंगे
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबंटु लिनक्स ओएस वर्ज़न 1204 और क्टर्टल वर्ज़न 081 बीटा का उपयोग कर रही हूँ
मैं मानती हूँ कि आपको क्टर्टल के कार्य की बुनियादी जानकारी है
यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट httpspoken tutorialorg देखें
एक नया क्टर्टल एप्लिकेशन खोलें
दश होम पर क्लिक करें
सर्च बार में क्टर्टल टाइप करें
क्टर्टल आइकन पर क्लिक करें
पहले learnकमांड देखते हैं
लर्न एक विशेष कमांड है जिसका उपयोग अपने निजी कमांड्स बनाने के लिए होता है
लर्न कमांड इनपुट लेकर आउटपुट देती है
देखते हैं कि नयी कमांड कैसे तैयार की जाती है
स्पष्ट देखने के लिए मैं प्रोग्राम टेक्स्ट जूम करती हूँ
स्क्वेयर बनाने के लिए एडिटर में कोड़ टाइप करें
रिपीट 4 कर्ली ब्रैकेट्स में फॉरवर्ड 10 टर्नलेफ्ट 90 यहाँ नंबर 10 स्क्वेयर की लंबाई को उल्लिखित करता है
अब लर्न कमांड का उपयोग करके स्क्वेयर बनाने के लिए शामिल कमांड्स को सीखते हैं
हम स्क्वेयर बनाने के कमांड्स के इस सेट का नाम स्क्वेयर रखेंगे
जो कमांड सीखनी है उसके नाम के बाद लर्न कमांड है ऐसी स्थिति में वह स्क्वेयर है
निम्न कोड़ टाइप करें
लर्न स्पेस स्क्वेयर स्पेस x कर्ली ब्रैकेट्स जोड़ें
10 को x से रिप्लेस करें
नयी कमांड जिसे हमने परिभाषित किया है स्क्वेयर है
स्क्वेयर का साइज स्थापित करने के लिए स्क्वेयर एक इनपुट आर्ग्युमेन्ट x लेता है
ध्यान दें कि जब आप यह कोड़ रन करते हैं स्क्वेयर कोई भी आउटपुट नहीं देता
लर्न कमांड स्क्वेयर को सीख रहा है जिसका वो बाद में उपयोग करेगा
स्क्वेयर कमांड अब कोड के बाकी हिस्सों में एक सामान्य कमांड की तरह इस्तेमाल की जा सकती है
मैं यहाँ कुछ और पंक्तियाँ जोड़ती हूँ
टाइप करें गो 200200 स्क्वेयर 100 स्क्वेयर 100 कमांड का उपयोग करके टर्टल 100 आयाम का स्क्वेयर बनाता है
अब कोड़ रन करें
टर्टल कैनवास पर स्क्वेयर बनाता है
अब 100 बाय 50 रिप्लेस करें
फिर से रन करें
टर्टल फिरसे 50 आयाम का दूसरा स्क्वेयर बनाता है
कृपया ध्यान दें कि इस कमांड का उपयोग इस प्रोग्राम के दायरे में ही किया जा सकता है
मैं एडिटर से वर्तमान कोड़ मिटा दूँगी
कैनवास क्लियर करने के लिए क्लीयर कमांड टाइप करें और रन करें
आगे हम रैंडम कमांड के बारे में सीखेंगे
रैंडम कमांड इनपुट लेता है और आउटपुट देता है
रैंडम कमांड के लिए सिन्टैक्स रैंडम xय है
जहाँ एक्स और य दो इनपुट्स हैं
एक्स न्यूनतम आउटपुट और य अधिकतम आउटपुट निश्चित करता है
आउटपुट रैन्डम्ली एक्स और य के बीच चुनित संख्या है
एप्लिकेशन में उपयोग के लिए रैंडम कमांड डालें
मेरे टेक्स्ट एडिटर में पहले से ही एक कोड है
मैं कोड़ समझाऊँगी
रिसेट कमांड टर्टल को डिफॉल्ट पोजीशन में सेट करता है
यहाँ कमांड रैंडम 120 रैंडम संख्या का चयन करता है जो उसके समान या 1 से अधिक और उसके समान या 20 से कम है और उसे वेरिएबल एक्स के लिए प्रदान किया है
रिपीट कमांड और कर्ली ब्रैकिट्स में लगे कमांड्स एक वृत्त बनाना शुरू करते हैं
मैं टेक्स्ट एडिटर से कोड़ कॉपी कर उसे क्टर्टल के एडिटर में पेस्ट करूँगी
ट्यूटोरियल रोकें और अपने क्टर्टल एडिटर में प्रोग्राम टाइप करें
प्रोग्राम टाइप करने के पश्चात ट्यूटोरियल पुनः आरंभ करें
जब हम कोड़ रन करते हैं टर्टल कैनवास पर 1 और 20 दरम्यान के त्रिज्या के साथ एक वृत्त बनाता है
इस कोड़ को कई बार निष्पादित करते हैं
आप देख सकते हैं की हर बार विभिन्न साइज के वृत्त बने हैं
हर समय जब भी आप इस कोड़ को निष्पादित करते हैं कैनवास पर विभिन्न त्रिज्या का वृत्त बना है
अब उदाहरण में लर्न और रैंडम दोनों कमांड्स का उपयोग करते हैं
मैं एडिटर से वर्तमान कोड मिटा दूँगी कैनवास क्लीन करने के लिए क्लीयर कमांड टाइप कर रन करुँगी
टेक्स्ट एडिटर में मेरे पास पहले से ही एक प्रोग्राम है
अब मैं कोड़ समझाऊँगी
रिसेट कमांड टर्टल को डिफॉल्ट पोजिशन में सेट करता है
कैनवासाइज 300300 कैनवास की प्रत्येक चौड़ाई और ऊंचाई को 300 पिक्सेल्स में सेट करता है
R G और B तीन वेरिएबल्स हैं जिसमें मैं 0 और 255 के बीच रेन्डम वैल्यूज निर्दिष्ट कर रही हूँ
कैन्वास्कलर RG और B कमांड में पहले चरण में रेड ग्रीन ब्लू संयोजन को निर्दिष्ट किए हुए वेरिएबल आर जी और बी से रिप्लेस किया गया है
कैनवास कलर रेन्डम्ली सेट होता है जब यह कमांड निष्पादित होती है
red blue green वेरिएबल्स के अन्य सेट हैं
जिसमें रेन्डम वेल्यूज 0 और 255 के बीच रेन्डम्ली निर्धारित की हैं
पेनकलर red blue और green रेड ब्लू ग्रीन संयोजन वेल्यूज वेरिएबल्स से रिप्लेस की हैं
red greenऔर blue जिनमें रेन्डम वेल्यूज पहले चरण में निर्दिष्ट की हैं
पेन का रंग भी रेन्डम्ली सेट होता है जब कमांड निष्पादित होती है
पेनविड्थ 2 पेन की चौड़ाई 2 पिक्सेल्स में सेट करता है
आगे मैंने वृत्त बनाना सीखने के लिए कोड़ प्रविष्ट किया है
यहाँ x वृत्त के साइज का प्रतिनिधित्व करता है
रिपीट कमांड के बाद कर्ली ब्रैकेट्स में कोड वृत्त बनाता है
कमांड्स का अगला सेट है गो कमांड्स के बाद सर्किल कमांड्स सेट है जो निर्दिष्ट आकारों के साथ वृत्त बनाती है
उदाहरणस्वरूप सर्किल विथ साइज 5 5 साइज के साथ गो कमांड में एक्स और य पोजिशन पर निर्दिष्टित निर्देशांक पर वृत्त बनाता है
प्रत्येक वृत्त के लिए मैंने कैनवास पर भिन्न पोजिशन को निर्दिष्ट किया है
मैं टेक्स्ट एडिटर से कोड कॉपी करके उसे क्टर्टल एडिटर में पेस्ट करूँगी
ट्यूटोरियल रोकें और अपने क्टर्टल एडिटर में प्रोग्राम टाइप करें
प्रोग्राम टाइप करने के पश्चात ट्यूटोरियल पुनः आरंभ करें
मैं इस कोड को फुलस्पीड में निष्पादित करूँगी
रुन आप्शन में उल्लिखित किसी भी गति में आप इस कोड को निष्पादित कर सकते है
मैं यह कोड कई बार रन करूँगी
आप पेन कलर और कैनवास कलर की रैन्डम्ली सेट वेल्यूज में अंतर देख सकते हैं
प्रत्येक निष्पादन में पेन और कैनवास के रंग में हुए बदलाव नोट करें
आप जितनी बार चाहें उतनी बार कोड निष्पादित कर सकते हैं और पेन और कैनवास के रेन्डम्ली सेट वेल्यूज के बदलाव नोट कर सकते हैं
इसी के साथ हम ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके हैं
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने लर्न कमांड और रैंडम कमांड के बारे में सीखा
हल करने के लिए एक नियत कार्य के रूप में लर्न कमांड का उपयोग करके पंचभुज वृत्त आयत अपने कैनवास के चारों कोनों पर षट्भुज और कैनवास के केंद्र में एक वृत्त बनाएँ
रैंडम कमांड का उपयोग करके विभिन्न रंग तैयार करें और अपने ज्यामितीय आकार और कैनवास को कस्टमाइज करें
इस लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें httpspoken tutorialorgWhat इस आ स्पोकेन ट्यूटोरियल
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद